इस इमेज में हमें एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है ग्राउंड में कही थोड़ी घास लगी हुई है और कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं और ग्राउंड में कुछ पत्थर दिखाई दे रहे हैं। एक--

इस इमेज में हमें एक बिल्डिंग नजर आ रही है बिल्डिंग का कलर सफेद है और खिड़किया नजर आ रही है निचे की तरफ एक दुकान है जिसकी शटर का कलर लाल है।

इस इमेज में हमें एक मंदिर नजर आ रहा है मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी हुई हैं जो गोल्डन रंग की है सामने की तरफ एक बर्तन रखा हुआ है जो सिल्वर रंग का है।